पेड़ पौधे भी लगे उगे हैं और चारों ओर पानी के वहां पे पर्दा लगा हुआ है हरे कलर का है और नीचे देखिए जमीन का भी कारपेट बहुत सुंदर से टाइल्स के लगा--

खिड़की से पेप वो फैलाए हुए हैं पर्दे लगाए हुए हैं कुर्सियों पर भी कपड़े हैं रखा हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन है कपड़ों का--

मुझे एक छोटासा कमरा दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे स्कूटी बेचने का शोरूम है यहां पर चार स्कूटी खड़ी हुई हैं एक पीले कलर की एक लाल कलर की एक ग्रीन कलर --

घर का मकान की बॉउंड्री है जिसपे पेंट कलर नही है नीचे घास भी हरी भरी को दूर को देखिए बहुत सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं धूप भी है अंधेरा नहीं है दिन का टाइम चल रहा हैं।

पेड़ो के ये खब्बे भी लगे हुए है लाइटो के और बगल से देखिये ये कुर्सी पड़ा हुआ है बेठने--

जैसे मर जाते हैं तो इसमें पैक करके उनको दफनाया जाता आ जाता है अभी के अंदर से वा--

जींस में एक लड़का दिखाई दे रहा है उसके बगल से देखिए एक बुड्ढे बुजुर्ग जो कि नीचे को मुंडी लटका कर खड़े हुए--

यहाँ नीचे सीढ़ी भी लगी हुई है अंदर जाने के लिए और--

सुंदर तक बढ़ा रहे हैं और बाहर थोड़ी दूर के देखिए बहोत सारे पेड़े भी बड़े बड़े भी दिख रहे हैं छोटे से वहां पर जानवर भी बहो--

तौलिया में लगा गामू बनियान पेहेन रखा है जिसने ऐसा लग रहा है जैसे वो शायद अपना घर मकान बनवा रा है उसी का घर मकान बन रहा है।

ए ऐसा लग रहा है इस टी_शर्ट का भी एक बंदोबस उसमे टिन शेड के लिए लगाने के लिए पाईप खड़े हुए हैं।

मुझे यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रही है जिस पर लिखा हुआ है लक्ष्य इंटरनेशनल अकेडमी एक कोचिंग चल रही है यहां पे नर--

मुझे यहां पे एक सुंदर सा घर का दरवाजा दिखाई दे रहा है जोकि कांच से बना हुआ है और वहां का वहां लकड़ी का --

मुझे यहाँ पर एक खेत नज़र आरा है इस खेत में बोहोत सारे छोटे छोटे पेड़ पोधे लगे होगे है वो पेड़ पोधे अभी बड़े नही हुए --

अह और नीचे रेलवे नीचे बाउंड्री भी है बहुत सुंदर सी टाइल वाइल कुछ अभी दिख नहीं रहा है ना ही कुछ--

मुझे यहां पर पानी से भरा हुआ बहुत बड़ा तलाब दिखाई दे रहा है इस तलाब में बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे और बड़े बड़े--

ओ भी खाने पीने का अपना सामान रखता है और वहां पे जो टेबल लगा हुआ कुछ स्पून कुछ टेबल पर कटोरिया भी रखी हुई है --